उसने एक घर का दृश्य बनाया है घर को पीले रंगों से सजाया है। नीचे हरे भरे घा घा भी चित्र बनाया है सामने एक लाल कलर का डब्बा भी दिखाई दे रहा है।